ठेकेदार पैसे लिया हुआ।

इससे बहुत सारे लोगों की जीविका चलती है तीन-चार लोग तो इंक्लूड रहते ही हैं।

सारे मतलब मिलते है जैसे आर्क वेल्डर ए.सी. मैकेनिक हो गया इलेक्ट्रीशियन हो गया पाइप फिटर प्लम्बर हो गया जे.सी.बी. जो मशीन होती है बुलडोज़र उसको जो ऑपरेट करने वाले होते हैं वो सारी इनके यहाँ मिल जाते है।

या हमारे जो है कुछ प्लेयर्स है जो कि अपने प्लेग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे है। ये लोग अपना हेल्थ --

का माहौल है किनारे-किनारे नदियाँ और बीच में पुल बन रहा है तो पुल से बहुत ज्यादा ही --

यहां पर रिस्क नहीं होता सड़को पर रहेंगे तो रिस्क रहे --